दाई ओर बाईं ओर काफी मकान दिखाई पड़ रहे हैं उसके नीचे काफी दुकान भी दिखाई पड़ रही है।

ऊपर कुछ सफेद टी शर्ट हैं नीचे काफी टी शर्ट हैंग करके रखे हुए हैं जो नीले कलर के हैं।

पीछे लाइन लगी हुई है कांच का दरवाजा बना हुआ है शटर भी लगा है दुकान में।

इस फोटो में एक ओपन रेस्टोरेंट दिखाई पड़ रहा है ये रात का नजारा है सामने एक टेबल दिखाई--

इस फोटो में एक सरकारी कार्यालय दिखाई पड़ रहा है एक सामने से एक रोड भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है वहीं कोने पे एक अ चौराहा बना हुआ है।

कार्यालय के बगल में बैठने की एक जगह बनी हुई है वहां पे कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं एक व्यक्ति खड़ा दिखाई पड़ रहा है रोड पे एक कुत्ता भी दिखाई पड़ रहा है।

पीछे बैकग्राउंड में भी काफी सजावट है बैनर्स लगे हुए हैं लाइट जल रही है।

इसने श शर्ट पहन रखा है और टोपी भी पहन रखी है।

कुछ बाइक्स भी दिखाई पड़ रही है एक बिजली का खंबा दिखाई पड़ रहा है।

उसके दाहिने ओर एक और व्यक्ति सफेद रंग के शर्ट पहने हुए बैठा हुआ दिखाई दे रहा है।

उसके ऊपर एक टंकी रखी हुई जो हरे रंग की है उसके पीछे भी काफी मकान दिखाई पड़ रहे हैं कुछ मकान के ऊपर भी पानी की टंकी रखी हुई है।

जाने के लिए स्लाइड बना हुआ है ऊपर काफी रंग बिरंगी लाइटें जो नील और पीले कलर की हैं।

परसेंट दिखाई पड़ रहा है एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर अप टू टेन परसेंटेज लिखा हुआ है।

और वहां बिल्डिंग के ऊपर भी एक व्यक्ति दिखाई पड़ रहा है जो बालकनी में घूम रहा है।

बगल पे एक और प्लेटफॉर्म दिखाई पड़ रहा है और रेलवे ट्रैक भी दिखाई पड़ रहा है।

दीवारों पे काफी कलाकृति की हुई है जो सफेद रंग और नारंगी रंग की है।

सामने एक काउंटर दिख रहा है जो लाल रंग के कपड़ों से ढका हुआ है वहां एक व्यक्ति है।

सामने सजावट की गई है कुछ व्यक्ति ग्रुप में वहां खड़े दिखाई पड़ रहे एक व्यक्ति जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है।

इस फोटो में एक रोड दिखाई पड़ रहा है जो पानी से भीगा हुआ है।

पीछे एक बैरियर भी बना हुआ है कुछ काफी गाड़िया चलती हुई दिखाई दे रही है रिक्शा और चालक भी दिखाई दे रहा है।

कुछ टेंपो दिखाई दे रहे हैं आसपास काफी मकान है और दुकाने भी दिखाई दे रही है।

ऐसी यह फोटो लगी है वो एक ब्रिज दिखाई पड़ रहा है।

ऊपर पीले रंग का प्लास्टिक का नेट भी लगा हुआ है आसपास प्लास्टिक के गमले भी दिखाई दे रहे हैं जो रंग बिरंगे हैं अंदर काफी पौधे दिखाई पड़ रहे हैं जो गमले में रखे गए--

पीछे एक बड़ा सा पेड़ भी दिखाई पड़ रहा है पेड़ के पीछे भी कुछ दिखाई दे रहा है जहां पे सब्जियां वगैरा मिल रही हैं।

वहां पे कुछ गमले भी रंगीन टंगे हुए है बाई ओर एक व्यक्ति कुर्सी से उठने के प्रयास कर रहा है।

एक लाल रंग का टी शर्ट पहने व्यक्ति वहां खड़ा है।

कुछ बॉटल्स है कुछ टिशू पेपर है उसके पीछे एक और छोटी सी कुर्सी दिखाई पड़ रही है।

बाहर रोड पे भी कुछ व्यक्ति जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।

आस पास काफी रंग बिरंगी कुर्सियां भी दिखाई पड़ रही है जो पीले और सफेद रंग की है और भी टेबल्स है।